यह एक जिम है जिसमे कसरत करने के लिये कई तरह की मशीने रखी हुई है इसमे कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे है और अपने मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं।

यह फल फ्रूट की दुकान है जिसमे केला एप्पल संतरा और बहुत से प्रकार के फल फूल नजर आ रहे हैं।

यह कृष्ण भगवान की मूर्ति है जो की वाइट कलर की है बहुत ही सुंदर मूर्ति है इन्होंने होठों का कलर लाल कलर का दिया है।